वहाँ पे वाइट कलर है थोड़ा येलो कलर है बिल्डिंग का --

यहाँ पर पर्दा लगा हुआ फैन है सीढ़ी है विंडो है नीचे टॉयज है।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

ऊपर से बदल दिखाई दे रहे हैं | एक पोस्टर लगा हुआ है लाइट का तार लगा हुआ है साइड में ईट की दीवारे दिखाई दे रही है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हैं उसमे विंडो हैं नीचे गेट हैं सीढ़ी हैं हरा हम्म हरे कलर के पेड़ पौधे हैं ऊपर से बादल दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर से बादल दिखाई दे रहा है।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

मूवी हाल है उसमें रेड कलर ग्रीन कलर नीला कलर येल्लो कलर पिंक कलर एंड नीला कलर दिखाई दे रहा है। वहाँ--

एक बिल्डिंग नजर आ रही है और बादल दिखाई दे रहा है विंडों दिखाई दे रही है यहाँ पे पोस्टर लगे हुए है।

यहां पर बहोत सारे लोग हैं नदी भरी हुई है नदी के पास बड़े-बड़े चट्टानें बनी हुई हैं उसके बगल में पानी भरा हुआ है।

हरा-भरा पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं मिट्टी भी दिखाई दे रही हैं नदी में पानी दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है ऊपर से।